यह फोटो एक स्टेडियम का दिखाई दे रहा है।

इसकी दूसरी तरफ माइक्रोस्कोप के द्वारा--

आदि बेचे जाते है इस यह--

यह हॉल में दो खम्बे दिखाई दे रहे हैं।

फोटो एक नीरमान कार्य का है जहां पे --

यह फोटो एक फुलवारी का है यहां पर--

और किनारे में एक नदी--

पीछे की तरफ एक बहोत बड़ा शीशा लगा हुआ है।